भैर फणु हम ते एक ढोखरू वे दिखेण लग्युं जू मैदान कर च लगणु।

यफणा हम तें भोत सारी फूलों की डाली छन दिखेण लगीं और भोत सारा डाला डुला भी दिखेण छ लग्यां।

जखम एक मालडा कू तस्लु कर छ बणायु जै का एंच एक पूथलु छ चङयूं ।

यूँ टी एक इमारत पर कुछ लिख्यू भी छा अ कुछ चित्र भी छन बण्या।

जिंकू रंग निलुवा पिछाणे खड़ा हम्थे और भी ईमारत क़ुछ डाला दिख्याणा लाग्यां।

पिछाड़ी बिटिन हमतें कुछ खम्बा और कुछ डाला भी दिखेण छन लग्यां।

जु दिखेण से बत्तख छा लगणा जों कु रंग सफेद यु बिटि एक बत्तख पाणी छ पीणु।

जखा हम तें कुछ कछली भी दिखेणु भ्वां फणु अर एक पेप भी दिखेंण छ लग्युं जे कु रंग नीलू आ।

ओर पोर हम तें कुछ और छोटा छोटा मुर्गा मार्ग छन दिखेण लग्यां दिखेण से लग्दु यु एक पिंजरा का भितर छान।

ये चित्र मा हम त एक गाड छ दिखेण लगी जामा हम त बड़ा-बड़ा डूंगा दिखेण लग्यां ओर पोर हम त पहाड़ छ दिखेण लग्यां जामा हम त बड़ा बड़ा डालान दिखेण लग्यां।

जें पर कुछ लिख्युं भी छ वां पर हम तें एक गमला भी दिख्येंणजै पर कुछ लिख्युं भी छ भ्वां फणा हम तें एक गमला भी दिखेण लग्युं। लग्युं।

ये चित्र माँ हम तें दुइ दुखनि दिख्येंण लगि जौं का भितर हम तें भोत सारो सामान दिख्येंण लग्युं।

दिखेण से लग्दु इ जु लोग छान उ मिस्त्री और लेबर छान यू छत के एंच लेंटर छन डालना।